मुझे इस फोटो में पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

एक बस दिखाई दे रही है।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

पुरानी दिवाले दिखाई दे रही हैं।

हरे पेड़ दिखाई दे रहे है।

मुझे इस फोटो में एक लेडिज दिखाई दे रही है।

हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

एक बाल्टी दिखाई दे रही हैं।

बच्चों की साइकिल दिखाई दे रही हैं।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

मुझे इस फोटो में एक पलंग दिखाई दे रहा है।

एक रूम दिखाई दे रहा है।

ये इस फोटो में एक ईस्कूल दिखाई दे रही--